ओ केनस बैंक है और बैंक के नीचे नाम लिख्योडॉ है अठ ऐ.टी.एम. है ऐ.टी.एम. मशीन भी है।

माहेश्वरी ब्रदर्स की तरनाऊ वाले दिल्ली दरवाजा नागौर में।